ये एक जीम है यहां पे एक लड़की जिम कर रही है यहां पे फिटनेस और बॉडी का ख्याल रखा जाता है यहां पे फिटनेस बहुत जरूरी है अपनी बॉडी के लिए--

ये एक दूल्हे की बारात जा रही है सब लोग नाच रहे हैं बैंड बाजा बारात--

ये सलॉन के ओपनिंग है बहुत अच्छा सैलोन है।

ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है इसको अपार्टमेंट कहा जाता है यहां पे लेंसेस और बहुत सारे घर होते हैं और ऐ_सी लगी है हर घर के सामने एक-एक ऐ_सी लगी है बहुत खूबसूरत घर है।

ये बहुत अच्छा वाटर पार्क है यहां पे बच्चे पानी में खेल रहे हैं और ये मम्मी पापा देख बच्चा वहां पे तिल रहा है पानी में है ऊपर है।

यहां पे देखो कितना बड़ा पत्थर बने हुए हैं कितनी हरियाली है रेत है सिमिट है यहां पे सब लोग घूमने आते है यहां पे अपने अपने फैमिली को लेके घूमने आते है बड़ा अच्छा लगता है।

ये एक देवी का मंदिर है यहां पे पूजा पाठ की जाती है।

और यहां पर लड़कियां जितने भी आते हैं बहोत फिट एंड फाइन रहते हैं। जिम हमको करना चाहिए एक्सरसाइज करना चाहिए वर्कआउट करना चाहिए।

ये जिम फिटनेस है यहां पे बॉडी को फिट किया जाता है यहां पे जिम वर्कआउट किया जाता है यहां पे अगर दुबले होना है तो योगा भी की जाता है एक्सरसाइज भी होती है ।

यहां के सिखाने वाले ओनर भी बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छी तरीके से सिखाते हैं यहां पे बॉडी भी बनती है।

ये मछली मार्केट है यहां पे फिश मिलती है यहां पे बहुत बड़ी-बड़ी फिश मिलती है और यहां पे फिश खाना भी बहुत अच्छा है।

दो आदमी काम में लगे है एक बैल गाड़ी है जिसमें रखे--

यह किसीको गिफ्ट देने के लिए तोफ़ा देने के लिए शादी में बहोत अच्छा काम आता हैं।

बहुत खूबसूरत डिजाइन में लकड़ी से बना गया है।

ये एक एयरपोर्ट है यहां पे देखो सब अपने-अपने बैग ले रहे हैं यहां पे दो आदमी खड़े हैं वहां पे दो औरतें खड़ी हैं वो अपना टिकट दिखा रहे हैं अपना हिसाब दिखा रहे हैं।

बहुत सारे मेहमान आए फूफू खाला दादी नानी चाची दूलन को हल्दी लगाई जाती है।

ये बच्चा किसी की शादी में आया है और सेल्फी ले रहा है।

ये एक बहोत बड़ा मैदान है यहां पे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं गेम खेलते हैं।

यहां पे बच्चे आगे बहुत एंजॉय करते हैं यहां पे देखो कितने सारे बच्चे क्रिकेट खेल रहा है तो कोई फुटबॉल खेल रहा है।

इसको बस डिपो कहा जाता है यहां पे दो औरतें फोन में कुछ देख रही है तीन चार मर्द बैठे हैं।

ये एक मशीन है ये फैन के टेप में दिखी जाती है इससे बहुत काम बनते हैं हर चीज में इसको काम आते हैं कोई इंजीनियर बना के गए हैं यहां से--

और वो ऑटो ऑटो वाला जा रहा है कह रहा है कि देखो--

यहां पे गाय भैंस है यहां पे गाय भैंस का दूध निकाला जाता है जो दूध सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है ये गाय और भैंस है।

ये एक छोटे से बड़े बच्चों का एक शोरूम है छोटा सा बहुत खूबसूरत कपड़े यहां पे मिलते हैं ये छोटा सा शॉप है।

बहुत खूबसूरत कपड़े मिलते हैं यहां पे बहुत--

यहां पे घर का काम चल रहा है दीवार में अलमारी बनाई जा रही है सब कारीगर खाना खाने के लिए गए हैं सब यहां पे लकड़ी पड़ी है ऊपर भी लकड़ी लगी है देख लो आप--

यही किले में रहते थे और अपना घर बसाते थे अपनी रानियों को लेके--